जो पेड़ो का कलर ग्रीन है पास में ही मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है जिसका शटर लगा है।

चिमनियों का कलर मुझे ग्रीन दिख रहा है।

बैनर में अमन जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

आ लड़के के पीछे मुझे काफी सारे पेड़ और पोधे दिखाई दे रहे है जोकि ग्रीन कलर के है इसमें मुझे पर्वत भी दिख रहे है।

इस पिचर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है जिम के अंदर मुझे एक्सरसाइज की मशीन दिखाई दे रही है इसमें मुझे एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

इसमें अगरबत्ती भी लगी हुई है नारियल भी दिखाई दे रहे है पीछे मुझे फूल की थाली भी दिखाई दे रही है सामने की तरफ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

एक कार गार्डन में खड़ी हुई है और नीचे की तरफ मुझे घास दिखाई दे रही है घास का कलर ग्रीन दिख रहा है पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे है।

दिख रहा है जिस ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है और ब्लू कलर का पेंट पहना है।